कलर गोल्डन रेड -----

एक नदी है नदी के किनारे बहुत सारे पेड--

एक घोड़ा है जो कि स्टैचू से बना हुआ--

दो कैरम बोर्ड्स है एक छोटा है और एक बड़ा--

कुछ गीराक खरीदने के लिए आए हुए हैं एक बल्ब लगा हुआ--